वहां में भी टी स्टॉल बंद है।

यहां पर चारों तरफ से पेड़ पहाड़ दिख रहे हैं।

और दोनों तरफ लाइट भी लगी हुई है।

जैसे आयल परफ्यूम पाउडर सैनिटाइजर और भी बहुत सारे वस्तुएं रखे गए हैं।

चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इसकी दीवार पर एक घड़ी भी लटकी हुई है।

सीढ़ियों में स्टील की पाइप लगी हुई है।

स्टेज पर बहुत सारे महिला और पुरुष और बच्चे भी है।

स्टेज के पीछे कपड़ों और रंग बिरंगो फूलों से सजा हुआ है।

यह एक खुले स्थान का दृश्य है।

रोड पर बहुत सारे व्यक्ति भी हैं।

डेसिंग के बगल में दो और लकड़ी के कुर्सिए रखे गए हैं।

बाहर के गेट में शीशा लगा हुआ है।

यहां पर एक फोर व्हीलर खल खड़ी है।

ये कमरे की दीवार का कलर व्हाइट है।

इस मकान के आगे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक नाव के ऊपर दो व्यक्ति भी है।

कमरे में एक बोर्ड भी बना हुआ है।

और चारों तरफ ऊपर में लाइटें भी जल रहे हैं।